सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उसके ठीक पीछे बस भी है। लाल कलर की है जो देखने में उसके पीछे दो आदमी है।